यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं ए ग्रीन दुबा लगी हुई है कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई है |

और यहाँ पे बिल्डिंग में पुरे में कांच ही कांच लगी हैं कुछ पेड़ लगे हैं |

यहाँ पे एक होटल है एक बहुत-बड़ा सा मॉल है।

येलो पिले कलर का कपडा लगा हुआ है एक टेबल रखी है जिसमे पीले कलर का कपडा बिछा हुआ है ।

यहाँ पर बहुत सारे पत्थर हैं और यहाँ पे पहाड़ी बनी हुई है पत्थर ही पत्थर की और यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं ।

यहां पे एक हॉल है हॉल मे बहुत सारी टेबल रखी हुई है कुर्सी रखी है।